के आसपास की दुकान है जहां हर एक प्रकार की देती वो भी सस्ते और उचित दामों में--

यहां पे सही प्रकार की चीज है।

यहां एक बुक की दुकान लग रही है जिसमें सभी तरह के बुक मिलते हैं।

यहां क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है।